यह पंडाल ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है।

सामने में दो मर्करी भी लगा हुआ है।

यह एक होटल का चित्र लग रहा है जो पिंक कलर का है।

में ढलाई करने का मशीन भी रखा हुआ है और यहां पे बहुत सारा सीमेंट का बोरा भी रखा हुआ है।

यहाँ बहुत सारे मशीन रखे हुए हैं।

जिसके ऊपर बहोत सारा बांस लगा हुआ है कुछ बांस टेढ़े तथा कुछ बांस सीधे लगाए गए हैं।